इस इमेज में मुझे बहुत बड़ी-सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है यह बिल्डिंग ब्राउन वाइट कलर की लग रही है।

जंगल में मुझे चार पांच हिरन दिखाई दे रही है जो घांस खा रही है।

इस इमेज में मुझे एक बिल्डिग दिखाई दे रही है जहाँ पर तीन बड़े-बड़े से गेट बने हुए हैं।

इस इमेज में मुझे एक ए.टी.एम. मशीन दिखाई दे रही है यह मशीन ग्रीन कलर की है।

इस इमेज में मुझे एक ए टी यम मशीन दिखाई दे रही है ए टी यम का गेट काँच का है गेट खुले हुए है बाहर मुझे एक सड़क दिखाई दे रही है।

कुछ रखा हुआ है पत्थर के पीछे से कुछ झाड़ियाँ दिखाई दे रही है सीढियों के पास कुछ छोटे बड़े पत्थर दिख रहे है सीडियों के बगल में एक पेड़ दिख रहा है ।

मशीन के पास की दीवारें वाइट कलर की हैं। मशीन एक बॉक्स के अंदर रखी हुई है।

गेट पर ताला लगा हुआ है चर्च के ऊपर प्लस के साइन बना हुआ है चर्च की दीवारें ब्लैक और ग्रीन कलर की लग रही है।

चट्टान का कलर यहाँ महरून और ग्रीन ब्लैक दिखाई दे रहा है। चट्टान के ऊपर हल्की-हल्की सी घांस और एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

एक नदी दिखाई दे रही है पेड़-पौधे जो बहुत बड़े-बड़े है स्माल साइज के दिख रहे हैं और किनारे पर मुझे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं चट्टान दिखाई दे रही है।

पेड़ की पत्तियाँ झड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ चट्टानों पर धुंध जामा है।

ऊपर एक बहोत बड़ी पहाड़ी दिखाई दे रही है इस पहाड़ी के ऊपर भी कुछ पेड़-पौधे दिख रहे हैं।